इसमें दिखाए गए हैं कि यहां पर कुछ--

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहां पर एक--

च में दिखाया गया है कि यह पर एक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

यह एक इसमें पैसे वगैरा निक निकलते--

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक व्यक्ति हाथी की सूंड के ऊपर बैठा हुआ है।

कुछ व्यक्ति रेस भी मार रहे है साइड में भी हरे हरे घास भी दिखाई दे रहे --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

यहां पे एक कुर्सी पर व्यक्ति बैठा हुआ है जो की स्माइल दे रहा है और साइड में पीछे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कुत्तों के पेट वगैरा मिलते हैं।

यहां पे कुछ डेकोरेशन के लिए सामान आया हुआ है।

साथ ही में एक पार्क जैसा कुछ दिखाया गया है।